साइड में एक पोखर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसके साइड में भी पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे आदमी है बगल में भी मकान है।

पेड़ भी है बाहर में बहुत सारे तार है और एक खंभा है।

यह एक कपड़े की दुकान का तस्वीर है जिसमें बहुत सारा हैंगर में टी शर्ट टंगा हुआ है और बहुत सारे कपड़ा रखा हुआ है प्लास्टिक में।

एक रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है सीलिंग में पंखा लगा हुआ है एवं बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

टेबल पर टिशू पेपर रखे हुए हैं और ग्लास और दो आदमी बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा है।

दो पंडित बैठे हुए हैं और एक पंडित खड़े हैं।

यह एक बहुत बड़े मकान का फोटो है जिसकी खिड़किया दिख रही है खिड़कियों में पर्दे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक सड़क है जिसके किनारे बहुत बड़ा मकान है उस मकान के ऊपर मंदिर जैसा बना हुआ है।

इस फोटो में एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान है जिसमें बहुत सारे रैक बने हुए हैं।

दूर में कुछ मकान भी है।

एक आदमी एक चप्पल खोल के रखा है।

यह चारों तरफ से दीवार से गिरा हुआ है।